कलर के ब्वाय रखे हुए हैं टंगे भी हुए हैं टांग रखे हैं गुलाबी कलर के फ्लावर्स ।

दो गिटार रखें हुए हैं एक नीले कलर का है एक येलो कलर का और एक छोटा सा पियानो ।

सामने जो है एक सजा रखा है बड्डे पार्टी का गुब्बाड़े रखे हुए है बोहत सारे गुबारे लगे है।

और एल_ई_डी लाइट लगी हुई है मंदिर पर और--

कोई होटल लग रहा है होटेल ।

और सामने जो एक फ्लावर पॉट है जिसमें की सफेद कलर के फ्लावर्स लगे हुए है।